उसके आस पास बहोत सारे बैठने का जगह भी दिखाई दे रा है।

हरे पड़े पेड़ पौधे के बाहरी हिस्से वाले भाग में एक छोटा सा दीवाल दिखाई दे र--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

इस चित्र में जहाँ तक मैं देख पा रही एक बड़ा सा हॉल देख पा रही इस हॉल में बहोत स बड़ा --

बहोत ही सारी दम चित्र बनाए गए--

जमा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ बास के पेड़ भी दिखाई दे रहे कुछ छीन के पेड़ भी दिखाई दे रहें।

जो कुछ कुछ पेड़ है जो की बहोत ही लंबी लंबी दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे जो जो मंदिर है उस नीचे में दो लोगों अ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में यहां तक देख पा रही हूं एक बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है।

पेड़ पौधे छोटे बड़े लंबे सब तरह के अलग अलग तरह दिखाई दे पूरी तरह से सजा हुआ दी--

एक मेज रखा हुआ दिखाई दे रहा है टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है दरवाजा बंद--

इस चित्र में जहां तक देख पा रही हूं एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

ये मुसलमान लोग का मस्जिद है जिसमें की बहोत खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में जहाँ तक देख पा रहे है एक बड़ा सा गाड़ी देख पा रहे है गाड़ी का रंग है नीला और काला कलर का दिखाई दे रहा मे --

ये अलग अलग तरह के प्रदर्शित हो रहे हैं हरे हरे पौधे भी सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं जोकि बहोत सुं--